और बगल में छोटा सा घर दिख रहा है और बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हमें।

इस तस्वीर में हमें ए_टी_एम मशीन दिखाई दे रही है।

थोड़ा ही आगे को एक सीढ़ी रखी है।

आगे की तरफ दिवाले बनी हुई है और हमे एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

जहाँ पे दो बच्चे साड़ी पहन कर खड़ी है और तीन दो तीन लोग कुर्ता पहन के सफेद कलर का--

इस तस्वीर में हमे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

आगे की तरफ या अ मैदान है जहां पर मिट्टी मिट्टी है।